आगे दो लाल गाड़ी खरी है और उसके आगे सफेद गाड़ी भी खरी है एक ट्रक है।

एक एक कांटा उसके आगे प्लास्टिक का अ तराजू--

और लड़की के एक लाल कलर का लहंगा पहना हुआ है।

अह प्रिंट यानि कि कलर किया हुआ है उसके आगे आदमी खड़ा है।

छोटा सा काले कलर का घेरा लगा हुआ है उसके आगे एक दो खड़ा है पुराना और उसके पी --

उसके पीछे कुछ कवाड़ के समान है और आदमी एक खड़ा है लाल टी शर्ट में।

कांच का अने कांच लगा हुआ है कांच के अंद अ ए कांच के अंदर एक प्लास्टिक का --

दुकान में तस्वीर के अंदर एक प्लास्टिक का कुर्सी रखा हुआ है।

और एक ए_टी_एम और एक एयरटेल का बोर्ड है उसके पीछे ऊपर मकान भी बना हुआ है।

घांस भी उगा हुआ है हरे हरा और आस पास में पेर है और उसके पीछे एक बिल्डिंग भी है लाल कलर --

इस तस्वीर के अंदर सफेद कलर का बिल्डिंग है बिल्डिंग के आगे एक सफेद कार खड़ा है।